जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक डांस शो का स्टेज है जहां पे तीन लड़कियां बहुत सारे जेवर--

और बहुत सारे यहां पे पत्थर बिछे हुए हैं पत्थर के ऊपर एक लड़का खड़ा जा रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक सब्जी का दुकान है जिसमें बहुत सारी सब्जी हैं पपीता--

और सीटिंग चेयर भी रखी है ग्रीन कलर की दो रिंग लाइट दिख रही हैं और एक--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय है दो फ्लाईओवर है एक दूसरे के ऊपर--

बिल्डिंग के बोर्ड पे ब्लैक कलर से मड्रास कॉफी हाउस लिखा है लेफ्ट साइड में एस_बी_आई लिखा है।

और राइट साइड में एक ऐसा शेल्फ बना है जिसमें बच्चे लोग के चश्मे और कुछ खिलौने रखे हैं और--